इस पार्क में बीच में हवाई जहाज रखा हुआ है आप देख सकते है यहाँ पे हवाई जहाज को बना के रखा हुआ है।

ते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो की यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं।

जैसा की आप देख सकते हैं आपको ये नजर आ रहा है।

और काफी सारी बिल्डिंग वगैरा भी यहां पे ल बनी हुई है किसी की।

चिपका आप देख सकते है यहां पे चारो तरफ लाइट ही लाइट जलती हुई नजर आ रहीं है। जो की कलरफूल लाइट जल रही है डिस्को में |

केले हैं अनार है संतरा है सेब है यहाँ पर सभी प्रकार के जो फल यहाँ पे रखी हुई --

खड़ी हुई दिखाई दे रही है बिल्डिंग का काम चल रहा है उसी के पास में एक और बिल्डिंग है।

स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है यहां पे चारो तरफ ही छोटी-छोटी सी बिल्डि --

हेलो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं जो तस्वीर है जो --

बंद रहती है। उसी के साईड में काफी सारी और शॉप वगैरा जो है यहां पे खुली हुई है यहां से ये |

यहां पे साइड में एक कुर शॉप वगैरा कुछ है।

हेल्लो दोस्तों जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नदी है ये नदी --

और यहां पे चेयर वगैरा रखी हुई हैं मेहमानो को बैठने के लिए आप --

हेलो दोस्तो जैसा की आप देख सकते है सामने ये जो दिख रहा है जो की --